एक पार्क है पार्क में बहुत सारे--

यहां पे दुकान लगता है बहुत सारी मछली रखी है छोटा वाला पूरा डब्बे में मछली भरा हुआ है उधर एक बंदा बैठा हुआ है चेयर पे--

हैं ब्लू कलर ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है फिर उधर एक खिड़की है खिड़की में परदे लगे हुए हैं।

और जैसा रखा लगा हुआ है बगल में बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

गुलदस्ते टाइप के लगे हुए है इधर लैपटॉप है दिख रहा है दुकान है इ।

अ उ गेट का कलर मैरून है नीचे से बॉर्डर किया हुआ हैं और आगे बड़ा जैसा लोहे का ग्रिल लगा हुआ हैं।

यहां यीशु यीशु मसीह का मंदिर बना हुआ है यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है टंगा हुआ बगल में--